सामने कोका कोला और एयरसेल के भी बैनर लगे हुए हैं।

परीक्षण में पेड़ पौधे भी लगे हुऎ हैं जो वातावरण को हरा भरा बनाते है।

टेबल पर कई प्रकार की मछलियां रखी हुई हैं।

सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं।

सूरज की रोशनी में ट्रैन साफ दिखाई दे रही है।

ये एक मंदिर का दृश्य है जो रात में सजाया गया है।